यहां पर इसका नीचे में हम लोग कुछ व्यक्तियों का लाइन देख पा रहे हैं इनमें से किसी ने यहाँ पर --

इस फोटो के अंदर हम लोग एक रूम देख पा रहे हैं इसका एक दीवाल का रंग हम लोग वाइट देख पा रहे और एक दीवाल का रंग ब्लू देख पा --

फोटो के अंदर सामने में एक बड़ा सा बस देख पा रहे हैं जो कि रेड कलर का इसके सामने हम लोग दोगो बाइक देख पा रहे हैं जो की --

पाइप है व्माथा मेंएक ग्रीन कलर का स्कार्प देखपा रे मुह म ये --

ब व्ळकबंम ब्लैक ब्लू कलर का मास्क देख पा रहे पीछे का हम लोग ुम्म् बिल्डिंग देख बड़ा सा जो कि वाइट कलर का यहां पर कुछ हम लोग --

इस फोटो के अंदर हम एक रूम देख पा रहे हैं यहां पर एक व्यक्ति को --

कोट पहना हुआ है ब्लैक कलर का पेंट पहना ब्लैक कलर का जूता हाथ में एक छहरी देख पा रहे हैं सफेद कलर का अ व् शर्ट पहना हुआ है एक टाई पहना हुआ है देख पा रहे हैं यहां पर एक ब्लू कलर का बोर्ड में उनके बारे में लिखा हुआ है।

फोटो भी बना हुआ है साइड में एक सोफा देख पा रहे हैं जो कि ब्राउन कलर का है पीछे कुछ बुक स में बुक देख पा रहे हैं दीवार का कलर हम लोग वाइ देख पा रहे हैं।

पटरिया का कलर हम लोग ऑरेंज देख पा रहे ट्रक का कलर हम लोग वाइट देख पा रहे --

यहां पर हम तीन व्यक्ति को देख पाए जिनमें से दो ने वाइट कलर के शर्ट पहना हुआ है माथा में वाइट कलर का गमछा बांधा ब्लैक कलर का पहना हुआ है ब्लैक कलर का जूता देख पा रहे हैं व्यक्ति ने ग्रीन कलर का चेक शर्ट पहना है यहां पर हम लोग--

दुकान का सामने हम लोग कुछ कं लकड़ी का बेंच देख पा रहे--

इस फोटो के अंदर यहां पर एक स्टेज देख पा रहे हैं जिसके ऊपर हम--

इस फोटो के अंदर यहां पर हम लोग एक कंप्यूटर सेंटर कुछ देख पा रहे हैं यहां पर बहुत सारे हम लोग --

वाइट कलर का चेयर देख पा रहे हैंयहां पर बहुत सारे हम लोग कंप्यूटर का मॉनिटर देख पा रहे हैं यहां पर कुछ गब् बच्चों को देख पा रहे हैंजिनमें से किसी ने वाइट कलर का शर्ट पहना किसी ने --

इस फोटो का यहां पर सामने हम एक दुकान देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है चारमन कां केअर --

जो कि कुछ गंग्रे कलर के हैं और कुछ यहां पर रेड कलर के चेयर है।

नेवी ब्लू कलर का गेंजी पहन हुआ और ऑरेंज कलर का टोपी पहना हुआ यहां पर कुछ हम लोग पोल देख पा रहे हैं जहां पर हम लोग --

फैन देख पा रहे हैं सीलिंग फैन जो कि वाइट कलर कुछ एल_ई_डी लाइट देख पा रहे हैं यहां पर हम लोग कुछ राइस लाइट देख पा रहे --

ययहां साइड पीछे तरफ हम लोग के चेयर देख पा कि ब्लैक कलर का है हम

देख पा रहे हैं यहां पर एक हम लोग ब्लैक कलर का चेयर देख पा रहे हैं सोफा जैसा और पीछे एक प्लास्टिक का चेयर देख पा रहे हैंजो की --

स्कीन कलर का य सामने में एक हम लोग स्प्रे का बोतल देख ब्लैक कलर का प्रिंटर देख पा रहे हैं कुछ पेंका--

कवर में है कुछ ब्लू कलर कवर में फैन देख पा रहा हूं वाइट कलर का एकअम्--

वाइट देख पा रहे हैं दोको फैन देख पा रहे सीलिंग में जो ब्राउन कलर का--

फोटो के अंदर यहां पर हम लोग एक घर बनते हुए देख पा रहे हैं जिसके ऊपर हम लोग दो ट्यूब देख पा रहे हैं।

रेड और ब्लू कलर का यहां पर कुछ व्यक्तियों को देख पा रहे जिसमें से एक ने--

देख पा रहे हैं जो कि ब्लू कलर का पेंट पहना हुआ यहां पर हम डस्टमिन देख पा रहे हैं जो कि रेड कलर का साइड में हम लोग को झाव का जो देख पा रहे हैं यहां पर हम लोग फ्लैग काए --

बस देख पा रहे हैं जो येलो कलर सामने में एक व्यक्ति को देख पा रहे हैंजो कि वाइट कलर का शर्ट पहना हुए --

पौधा देख पा रहे हैं सामने में एक व्यक्ति को देख जो एक ग्रीन कलर का शर्ट पहने और ए ब्लू कलर का पेण्ट पहने हुए एण्टा स गेट जो--